यहां सामने एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर एक मकान का दृश्य दिखाई दे रहा है मकान के अंदर दो कुर्सियां दिख रही है।

पेट्रोल पंप के सामने एक सफेद कलर की टंकी रखी हुई है।

एक व्यक्ति येलो कलर की शर्ट पहन कर दिख रहा है।

कैम्पर के साथ एक व्यक्ति जो दूध की केन लेकर तेल डलवाता नज़र आ रहा है।

इस दृश्य से में अलग-अलग कलर की चिड़िया बैठी हुई है और तोते भी नजर आ रहे हैं।

कॉलेज के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है।

और एक पीले कलर का कूड़ादन भी दिखाई दे रहा है साइकिल भी दिख रही है।